तिरंगा को भी काँच में सटाया गया है। यह बुक माय शो का किर ऑफिस जो बुक है। ये अभी बंद है।

यह दृश्य किसी और का नही बल्कि यह पानी बहता हुआ आ रहा है। जंगल की धूप से हम देख रहे हैं इस पानी को --

नृत्य के लिए यह एक नृत्य का कार्यक्रम है और यहाँ पुरस्कार दीया जा --

सामने हम दृश्य देख रहे है एक हाल का। उस हाल में चारों तरफ टेबल लगाया गया है। एक तरफ टेबल पर हम देेेख रहे है खाने का बर्तन रखा है।